जहाँ पर में खड़ा हैं उसके ऊपर टीन का शेड लगा है यह किसी इस्टेशन या बस अंङडे का चित्र हो सकता है।

इसके आस-पास काफी सारे घने वृक्ष लगे हुए है और यह अ--

इस चित्र में हमें एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

इस चित्र में हमे एक दुकान दिखाई दे रही है जो लोंडरी एण्ड ड्राइक्लीनर की दुकान है।

और बच्चों के खेलने के लिए एवं व्यायम के लिए यहाँ कई चीजे दिख रही है।

यहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष लगा है ओर यहाँ पे कई झूले दिखाई दे रहै है जैसे फिसल पट्टी आदि--

इस चित्र में दिखाई दे रही सजावट बड़ी ही आकर्षक हैं।

इसमें से बीच बाले व्यक्ति ने अलग पोशाक पहन राखी है बाकी सभी लोगों ने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई है।